और पानी जांबा हुआ है बड़े बड़े छोटे छोटे बहुत सारे पत्थल दिख रहे हैं।

इधर एक बाइक लगा हुआ है जिसपे पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए है।

एक गाड़ी पीछे लगा हुआ है और हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

जिसका दो चार खिड़कियां दिख रही हैं और बहुत सारे पोल लगे हुए हैं।

चित्र में एक बहुत ही बड़ा हॉल दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बैलून दिख रहे हैं।

और पंखा बहुत सारे चल रहे हैं और रंग बिरंगे लाइटें लगे हुए हैं।

और एक साइड बहुत सारे जूते चप्पल हैं जो कि सजाया हुआ है।

एक कचरा पेटी है और रंग बिरंग से कुर्सी पेंट किया हुआ है।

और एक झाला दिख रहा है नीचे रास्ता बनाया हुआ है।

इस चित्र में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि एक पेट्रोल पंप पर आए हुवे हैं।

और लाइन से पेट्रोल ले रहे हैं। एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

बहुत सारे कुर्सियां लगी हुई है जिसपे एक पर्स रखा हुआ है।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

इस चित्र में एक गाड़ी दिख रहा है जो कि पिक अप है।